वाहन वाहन जा रहे है यहाँ से बहुत बड़ी सड़क निकली हुई है यहाँ पर बहुत सी कार जीप मे ड्राइवर जा रहे है।

बहुत ही अच्छी लाइटे लगी हुई है जो की अच्छी डिजाइन मे बना हुआ है वे बहुत ही अच्छी लग रही है।

और यहाँ पर गेट पर कुछ दो व्यक्ति खड़े हुए है और बाहर कुछ बाइके रखी हुई है और यहाँ पर कुछ--

यह एक बहुत बड़ा तालाब भरा हुआ है यहां पर बहुत ही पानी भरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत सारी वृक्ष दिखाई दे रही है और छोटे छोटे--